जैसा की हम देख सकते है सामने उनको हॉल दिख रहा है हॉल उनको स्टेज दिख रहा है स्टेज उनको बहोत ही सुंदर लग रहा है उसमे सफेद कलर का डेकोरेशन किया गया है गुलाबी कलर का डेकोरशन किया गया है नीले कलर का डेकोरेशन किया गया है।

कुर्सियां जो की सफेद दिख रही है सामने की स्टेज मे भी बाकी जो बीच में जो कुर्सियां है वो हरी कलर की दिख रही है जो की बहोत ही अच्छी बहोत ही सुंदर बहोत ही प्यारी लग रही है।

जैसा की हम देख सकते है सामने हमको बहुत सुंदर नजारा दिख रहा है बहुत हि बढिया नजारा दिख रहा है बहोत ही अच्छी जिम दिखरहि बहोत ही प्यारी लग रही है जिनके अंदर मशीन दिख रही है जो कि जिम करणे के काम मे अति है।

उपर खुला आसमान दिख रहा है। जो की बहुतही अच्छा बहुतही सुंदर लग रहा है। पेड़ की छाव आती दिख रही है। जो की बहुतही अच्छी बहुतही प्यारी बहुतही सुंदर लग रही है। ऊपर खुला हुआ आसमान दिख रहा है। जो की बहुतही बढ़िया बहुतही प्यारा --

जैसे की हम देख सकते है। सामने हमको मल्टी दिख रही है। मल्टी हमको कोई सरकारी भवन जैसी लग रही है। बहुत ही पुराणा भवन लग रहा है। खिड़किया बानी हुई है। जिसकी संख्या कुछ ज्यादा दिख रही है। खिड़किया हमको --

जैस की हम देख सकते है सामने हमको एक ऑफिस दिख रहा है सरकारी दफ्तर जैसा ऑफिस दिख रहा है जिसको कार्यालय लिखा हुवा दिख रहा है ग्रीन कलर का घर कार्यालय दिख रहा है जो की खिड़कियां दिख रही है जो की दो दिख रही है।

जैसा की हम देख सकते है की सामने हमको जिम दिख रही है जिम हमको बहुत हि बड़ी लग रही है जिम के अंदर हमे जिम का समान रखा हुआ दिखता है जो की बहुत अच्छा लग रहा है बहुत ही सुंदर लग रहा है ऊपर छत दिख रही है जो की ग्रे कलर की दिख रही है।